ये एक सुजुकी की एजेंसी --

साइड में एक मकान जिसमें एक व्यक्ति जा रहा --

अभी लगता है नया स्टार्ट हुआ है।

वहां पे कुछ व्यक्ति हैं।

इसपे कोई भी कलर या पेंट नहीं हुआ हुआ है।

और बाहर कुछ वाहन भी खड़े हैं।

जैसे गाड़ी बाइक्स और उनके पास व्यक्ति भी खड़े हैं जो बातचीत कर रहे हैं आपस में।

कुछ पेन भी रखी हुई--

तस्वीर लगी हुई है उसकी उसमें क्वीन का पत्ता लगा हुआ है।

और बहोत सुंदर सुंदर अटैची रखे हैं।

जहां पे एक गाड़ी खड़ी है।

और यहां पर दीवारो पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जिनपर हमें अच्छाई शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है।

ये किसी मैरिज हॉल का फोटो है।

खंबे खड़े हुए हैं जो लोहे के होते हैं।

जिसके सामने कोई अध्यक्ष या प्रमुख व्यक्ति बैठा हुआ है।

यह किसी मकान के साइड से लिया गया फोटो है।

और उनके साइड में एक गाड़ी है।

यह एक पेट्रोल का फोटो है।

यहां पे कोई व्यक्ति तेल डलवा रहे हैं।

फोटो है यहां पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए है।

के गले मे माला गिरी जा रही है और वो कुछ बातें भी कर रहा है।

लगता है ये किसी महल का फोटो है।